सामने एक बॉक्स रखा हुआ जिस बॉक्स के अंदर बॉक्स रखा हुआ दिखाई दे रहा--

गेट लगी हुई दिखाई दे रहीं सामने घर के सारे पेड़ पौधे लगे हुए घर के सारे पेड़ पौधे लगे हुए --

रेलवे स्टेशन बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसे रेलवे स्टेशन में नीचे की ओर पटरियां पर--

आजु-बाजू व्हाइट कलर के सामान वमान रखे हुए दिखाई दे रहे दो से तीन बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे है बोर्ड के ऊपर दवाई रखी हुई दिखाई दे रही सामने को पर्दा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में सामने की ओर सजावट होती दिखाई दे रही जो--

जो बलून लगे हुए टंगे दिखाई दे रहे हैं बेंच लगे हुए हैं जिस बेंच के पीछे--

मुझे इस फोटो में सामने की ओर घर बना हुआ दिखाई दे जिस घर में पीली कलर से पोता गया वाइट कलर की पट्टियां पोती गई हैं।

दिखाई दे रहे हैं फुल उल नीचे कोई टाइल्स है ब्लैक कलर की टाइल्स लगी हुई है।

लेडिज की कपड़े टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं एक बल्ब लटका हुआ दिखा दिया दुकान में--

सामने की ओर कई सारे सामान वमान किराने की दुकान धुंध गाड़ी मोटर हमे दिखाई दे रहे हैं छोटे-छोटे से--

बैडमिंटम बैट रखे दिखाई दे रहे है। रात का समय है।

इथमन एक एक बैठी हुई दीवाल फूटी हुई दिखाई दे रही है दे रही है ऊपर की ओर एन_ए_एस_ए_आर --

तुम्हें जल्दी फोटो ओपन कर लाइट जलती दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की लाइट जलते हुए दिखाई दे रही है और झाल लगी हुई दिखाई दे रही है।

इसमें कई सारे टेंट के स्टील स्टैंड ब्लैक पर्दे वाइट पर्दे इधर पर्दे वाइट कलर के पर्दे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं साइड में दीदी का बेंच पर बेंच बेंच के ऊपर--

मुझे इस फोटो में सामने की ओर एक लोहे का--

पट्टी तात लगी हुई दिखाई दे रही है जो पट्टी--

ऊपर की ओर लाइट जलती हुई दिखाई दे रही जो वाइट कलर की लाइट जलती हुई दिखाई दे री--